एक बहुत बड़ा स्टेज टाइप का दिखाया जा रहा है जिस पर बहुत सारे--

ए बी सी डी एफ जी तक पुरे एच तक लिखा गया है।

नीचे कुछ मशीन मशीन है तार लटके हुए हैं मेज पर लाइटिंग का काम है नीचे पोल पर--

पीलर्स के पूरे लोहे के दिए गए कुछ नंबर वंबर --

बोर्ड दिया गया कुछ चीनून दिए गए हैं और भी बहुत कुछ दिए गए हैं बहुत सारे बाइक ।

नीचे फर्स्ट पर मार्बल का काम है ऊपर भी फॉल सेलिंग का काम किया गया है किचन चिमनी है।

कुछ दराज उराज टाइप के रखे गए हैं बहुत सारे--

एक छोटा सा शॉप टाइप का दिखाया गया जिसके बाहर पर बोर्ड लगा हुआ है के ई आई ।

और एक बोर्ड है बोर्ड पर लगा गया है बगल में एक छोटा सा और शॉप है एक स्कूटी खड़ी है और एक--

रूम दिखाया गया है रूम पर एक दराज टाइप का अलमारी टाइप का बनाया गया है जो कि प्लाई का है नीचे एक --

में खाने वाने के हैं कुछ टेबल है टेबल पर कुछ टिशू --

और कुछ मशीन मशीन रखे गए हैं कुछ तारवार रखे गए हैं वह कार वाइट कलर पर है दो तरह तरवा--

कोचिंग टैप का दिखाया गया कंप्यूटर क्लास जिसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां बैठी हुई है बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हुए दो कंप्यूटर ऑन है।

ऊपर एक एल_सी_डी टी_वी लगा है ए_सी है बोर्ड है जी_एस_टी का कागज टाइप का दिया गया सर्टिफिकेट है।

पर फॉल सेलिंग का काम किया गया लाइट है एक लेडीज खड़ी है वह कुछ बता रही है दो जन क--

गराज टाइप का है एसी है एलईडी लाइट है बहुत सारे पिक्चर विक्चर है।

लेकर के जा रहे हैं बहुत सारे बच्चे-बच्चे खड़े हैं पुलिस है दो और बहुत सारे आदमी जो बैठ कर के देख रहे रोड पर है।

और वो ऊपर में एक गाड़ी टाइप का बनाया गया है किरान का जो कि ब्लू कलर पर है ब्लैक कलर के उसके चक्के किए गए हैं पेड़ में--

एक होटल टाइप का दिखाया गया है जिसके बाहर पर लिखा गया है बोर्ड पर पंजाबी ढाबा लंच डिनर ब्रेकफास्ट बगल में--

और एक बोर्ड दिया गया जो मराठी पे लिखा गया है ऊपर कोकोकोला के पोस्टर दिए गए हैं छतरी लगाए गए हैं तार हैं पेड़ हैं।

एक का शोरूम दिखाया गया है जिसके बाहर पर बोर्ड में लिखा गया है बहुत सारे बाहर पर--

दीवार टाइप का लगाया गया है अंदर में भी बहुत सारे गेट टाइप के किए गए हैं बाउंड्री टाइप के लगाए गए हैं।

एक लड़का को दिखाया जा रहा है जो सेल्फी ले रहा है वो खड़े होकर के सैंटोगेंजी और जींस पहने हुए नीचे--

छोटा सा कपड़े का शॉप दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे कपड़े-उपड़े स्वेटर वाइटर जैकेट्स टांग करके रखे गए हैं।

कुछ छोटी सी बाउंड्री टाइप की दिखाई गई है और बहुत सारे सूखे पत्ते वत्ते भी गिरे हुए हैं।

जय शिव शक्ति रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट के बाहर बहुत सारे पिक्चर्स चिपकाए गए हैं खाने वाने के एक डस्टपिन ग्रीन कलर के रखे गए हैं।

बाहर एक बहुत बड़ा सा गेट दिखाया गया गेट पर कुछ मराठी मराठी पर लिखा गया है दो पिलर सीमेंट के बनाए गए हैं।

एक बहुत बड़ा सा ब्लू कलर का गेट है और बगल पर स्कूल स्कूल के पिक्चर्स पिक्चर्स लगाए गए हैं दीवार पर बनाए गए हैं।

पेंट वेंट अन्दर बहुत बड़ा सा पेड़ है फूल का गाछ है कुछ घर वर टाइप के दिखाये जा रहा है।

बड़ा-बड़ा नारियल के खजूर के गाछ है एक घर दिखाया गया घर के ऊपर में त्रिपाल आसमानी कलर के लगाए गए हैं।

एक होटल टाइप का दिखाया गया जिस पर एक दीवाल पर लिखा गया है निशान--

और कुछ टेबल टैप के हैं जिस पर कुछ खिलौने के सामान उमान रखे गए हैं ऊपर लाइटिंग का काम किया गया है।

नीचे खाने वाने के सजा करके बूफर टाइप के बर्तन वर्तन रखे गए हैं गैस ओपन पर--

वो भी लोहे के हैं कुछ आसमानी आसमानी है रोड टाइप का बनाया गया है मट्टी का र

टाइप का बनाया गया है एक कारखाने से धुएं निकल रहा है बहुत सारे लाइटिंग है एक पोल है पोल पर --

पर एक छोटा सा गार्डन बनाया गया गार्डन पर साइड में कुछ छोटे-छोटे पौधे लगाए गए हैं बगल बीच में--

एक आदमी फोन पर बात कर रहा है एक बैठने का जगह टाइप का बनाया गया है साइड में बहुत--

मंदिर दिखाया गया है मंदिर पर एक बहुत बड़ा सा जिस पे।

जिस पर एक बच्ची कुछ पूजा वजा कर रही है एक लड़का खड़े होकर के फोटो ले रहा है बगल में एक और लेडीज है।

एलईडी बॉल्स है बहुत सारे चेयर्स है टेबल है सभी के कुछ एक लड़का फोन चला रहा है कुछ लड़के वो।

पर कुछ लिख रहे हैं और बहुत ही सारे लड़के लड़कियां हैं.

एक रूम दिखाया गया है रूम पर एक रील व्हील बनाने का एक मशीन टाइप का है।

और दराज टाइप का है आईना है और उसमें कुछ लिखा गया वॉल है वॉल पर टैटू आर्टिस्ट लिखा गया है ऊपर कुछ लिखा गया है।

एक घर के बाहर का साइड दिखाया गया जिस पर लोहे का पीलर्स टाइप का बनाया गया है सीढ़ियां हैं।